यहां पर पत्थरों के बीच दो आदमी हैं जो एक हंस रहा उंगली दिखा रहा है।

और ऊपर बैलून भी लगे हुए है और एक काला और सफेद और पीले कलर के है और लाइट्स भी बहुत सारी रंग बिरंगी लगी हुई हैं।

यह किसी का मकान बना हुआ है यह पीले कलर का पुता हुआ लाल कलर का पुता हुआ है एक बैनर भी लगा हुआ है।

और इसमें ईटी रंग बिरंगी लगी हुई हैं और इसमें बहुत सारे बैलून जो आसमानी और सफेद लगे हुए हैं।

जो आसमानी पीले और हरे कलर के हैं और कुछ गुलाब के भी फूल हैं और उस तरफ भी बोहोत सारा सामान है।

इस दुकान में चार पांच आदमी खड़े हुए हैं और इसमें बहुत सारे बोरियों के गट्टर लगे हुए हैं।

और इस तरफ एक रास्ता जैसा बना हुआ है और उस तरफ भी बहोत सारे टावर दिखाई पड़ रहे है।